जमीन पर घास और बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक अच्छे से रोड के पीछे --

नीचे की और एक दुकान दिख रही है काला शटर दिख --

ये चित्र एक बड़ी सी दुकान का दिखाई दे रहा है।

जिसके दोनों गेट खुले हुए एक गेट में बाथरूम हैं।

एक लाल कलर की नई फोर व्हीलर खड़ी है।

इस चित्र में एक बड़ी सफेद बस खड़ी हुई है।

तीन व्यक्ति यहां चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति हाथ में कुछ खाता हुआ दिख रहा है।

ये चित्र एक बड़े से घर का दिखाई दे रहा है।

ये चित्र एक जिम का दिखाई दे रहा है।

यह चित्र एक रेस्टोरेंट का दिखाई दे रहा है।

क्षेत्र में एक बड़ी सारी बाइक खड़ी हुई है।

यह चित्र एक स्कूल के ग्राउंड का दिखाई दे रहा है जहां की ज जमीन क मट्टी सी है आगे तिरंगा झंडा लेहरा रहा है।

एक तांगे वाला तांगे के पास और एक तांगे वाला ऑटो पे बैठा दिखाई दे रहा है।

पीछे की ओर बहोत सी दुकानें दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

बाहर जमीन पर दो फोर व्हीलर हैं और बाइक खड़ी हैं।

ये चित्र एक गार्डन का दिखाई दे रहा है जहां जमीन पर बहुत सी घास है एक गोल सीढ़ियों के ऊपर चौखुट्टी सी छतरी का शेर डला हुआ है।

ये चित्र एक बड़ी सारी दुकान का दिखाई दे रहा है।

जहां पर कांच की अलमारी में बहुत से खाने के आइटम दिखाई दे रहे हैं।

हाथ में ब्लैक घड़ी पहने हुए खड़ा हुआ दिख रहा है।

ये चित्र एक टैटो की बड़ी दुकान का दिखाई दे रहा है।

जहां दीवार पर बहुत सी पिक्चर और टैटो बने हुए हैं।

यहां पे टेबल चेयर और बहुत सा सामान दीवार पे आईना दिख रहा है।

ये चित्र एक रेस्टोरेंट का दिखाई दे रहा है जहां एक बड़ा सारा काउंटर बना हुआ है।

ये चित्र एक टैटू की दुकान का दिखाई दे रहा हैं जहाँ ऊपर बैनर पर होम ऑफ आर्ट टैटू प्लानेट --

इसका कांच का दरवाजा है एक व्यक्ति इसका फोटो लेता हुआ कांच में दिखाई दे रहा है।

ये चित्र एक स्टेज का दिखाई दे रहा है जहां पर एक लड़की डांस करती हुई दिखाई दे रही है।

पैरों में सफेद जूते पहन के वो डांस कर रही है।